और ये बहोत अच्छा काम करते हैं इनके बारे में मैं बहोत बढ़िया सुना हूं और इनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं अपने तरफ से--

कपड़े भगवान जी के एक नंबर जैसे की लग रहा है राम लक्ष्मण सीता।

और ये किस चीज का जुलूस है पता नहीं चल रहा है आदमी बहुत सारे हैं एक नंबर लाइटिंग फाइटिंग है बहोत अच्छा नजारा है।

और यहां कुर्सी वरसी एक नंबर है टी_वी भी फोटो --

और ये दुकान है बहोत सारीया बंद हुई हैं और एक आदमी खड़ा है एक दुकान खुली हुई हैं तीन चार गा दो तीन गाड़ियां खड़ी हुई हैं एक डग्गा जा रहा है।

ये कोई पार्किंग है यहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और रोड गई है से--

दो खिड़की बंद है एक खुली हुई है और रूम वूम कुछ नहीं दिख रहा है सामने एक का रूम दिख रहे--

यहां टीचर है और बच्चे बहोत सारे हैं।

और ये रूम का पैंट भी बहोत बढ़िया लग रहा है।

और वहां बाजू में भी बच्चे है पीछे तरफ और यहां भी आगे मैडम पढा रही हैं।

और बाजू में सीढ़ी भी है आदमी कोई नजर नहीं आ रहा--

यहां कोई बाजार है और मोटरसाइकिल बहोत खड़ी है और यहां पर आदमी बहोत है और यहां दुकान भी खुली हुई है तीन चार--

दुकान बहोत बढ़िया है और इसमें आदमी कोई दिख नहीं रहा है और एक एक नंबर के खिलौने रखे हुए है।

जैसे कि मैं देख रहा हूं। यहां कोई डांस हो रहा है और चार पांच लड़कियां नाच रही है।

ये कोई डॉक्टर के ऑफिस है और बाहर तीन चार आदमी खड़े हैं।